और ये इधर एक बंदा सेल्फी ले रहा है और सामने बहुत बड़ी ऐसी लगी हुई है और ये लैपटॉप ऑन है।

और ये इनके क्लीनिक के अंदर का दरवाजा है दरवाजा में उनके हेडफोन टंगे हुए हैं ऊपर उनकी डिग्री वगैरा चिपकाई हुई है सामने बुक वगैरा पड़ी हुई है पढ़ने के लिए।

इसके बगल में मोटरसाइकिल खड़ी है और उधर एक एम.आर.पी. की दुकान है जो मतलब कट्टे वट्टे रखे हुए हैं जो खाद वगैरा के है उधर में बहुत सारा बड़ा मार्केट है यह --

भाषण दे रही है मतलब स्पीच बोल रही है एक लड़की दूसरी तरफ जा रही है और इसके अंदर एक मतलब पोल भी लगा हुआ है जो मतलब इसको टेंट को रोक रहा है।

और किया कार के ऊपर कलर करे जागो एक यहा मिकैनिक यह के सामने बिल्कुल जस्ट खडियो है।